यह एक चित्र है इस चित्र में एक मंदिर नजर आ रहा है इसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पेड भी लग रहे है।

यह एक चित्र है चित्र में एक योगा क्लास नजर आ रहा है जहाँ पे बहुत से बच्चे योगा करते हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक चित्र है चित्र में एक पेड़ पौधे नजर आ रहे है जो कि बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं और यहा बड़े-बड़े पेड़ भी है।

यह एक चित्र है इस चित्र मे एक बड़ा सा स्टेडियम नजर आ रहा है जहा पे बहोत से लोग भी दिखायी दे रहे है।

यह एक चित्र है चित्र में कुछ बच्चे--

चित्र में एक बड़ी सी दुकान नजर आ रही है और इसमें बहुत से लोग की दिखाई दे रहे हैं।

जिसके साइड में बहुत सी कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ा शोरूम नजर आ रहा है जिसमें बहुत से पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है जिसमैं बहुत सी बाईके खडी हुई दिख रही हैं।

जो कि बहुत खाली पड़ा हुआ है और इसमें कोई नहीं दिख रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक पार्क नजर आ रहा है जिसमें बड़े -बड़े पेड भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र मैं कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

किसी एक चित्र से इस चित्र में बहुत सी किताबें रखी हुई नजर आ रही है।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

चित्र में एक दरगाह दिखाई दे रही है जिसके सामने कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें बहुत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

जो की बोर्ड मै देखे हुये दिखाई दे रहे है।

जो कि बहुत है और इसमें काँच के ग्लास भी लगे हुए दिख रहे--

यह एक चित्र है इस चित्र में बोहोत बड़ी नजर आ रही है जिसके साइड में बोहोत से लोग भी दिखाए दे रहे हैं।

और इसमें बहोत से लोग भी दिखाई दे रहे हैं।